बहोत बड़ी मिनी बस खड़ी है और कुछ लोग ऊपर चढ़ रहे है बस में--

ये बहुत बड़ा इस्कूल है और अ यहाँ पे एक अच्छी सड़क बनी हुई है जहाँ पे एक चरपहिया खड़ा है।

और पत्ते भी दिख रहे है हरे हरे मिट्टी भी दिख रही है मंदिर सफेद रंग से कलर किया गया है।

दिए गए हैं जैसे एक के पास ढोलक है एक के पास अअ वो गिटार है।

किसी के पास तबला है तो किसी के पास क्या है।

बड़े बड़े मशीनें दिख रही हैं किरैन गाड़ी --

कुर्सियाँ लगी हुई है दो दो करके जॉइंट है।

और सभी चटाई पिछा के अपने अपने आसन पे बैठे हुए हैं।

और आपस में बातें कर रहे हैं और कमरे में लाइट्स लगी हुई है।

अ जक जग रखे हुए ग्लास रखे मेनू भी रखा हुआ है।

एक कमरा है जहां पे बहोत सारे बड़े बड़े मशीने रखी गई हैं।

और टेबल रखा हुआ है काउंटर बना हुआ है।

और उम मिरर लगे हुए हैं और पंखे लगे हुए हैं --

एक कमरा नजर आ रहा है जहाँ पर बहुत सारे मशीने है।

एक हॉस्पिटल है जोकि इस्काई ब्लू कलर से कलर किया गया है और --

एक जिओ की दुकान है जहाँ पे बहुत बड़ी पोश्टर लगी हुई है उसके बगल में दूसरी पोश्टर लगी हुई है।

और एक टीचर खड़ी हैं जो की साड़ी पहनी हुई हैं और चश्मा लगाई हुईं हैं।

किसी ने वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है बेंचेस हैं और रूम में लाइट्स भी लगे हुए हैं।

और नीचे कारपेट बिछाया गया है और ऊपर बहोत ही अच्छे से सजावट की गई है लाइट्स लगे हुए हैं।

कपड़ों का कलर है व्हाइट कलर और पीच कलर और आदमी बहोत सारे खड़े हैं।

यहाँ ईंटे रखे हुए हैं और एक बाइक रखा हुआ है और --

पौधे लगे हुए हैं छोटा सा घेरा करके उसमें मट्टी डालके पौधे लगाए गए हैं और--

एक किनारे एक गेट भी लगा हुआ है।

और अ कुछ लोग खड़े हैं आदमी --

और एक मेज है जिसके ऊपर पँखा रखा हुआ है छोटा वाला --

बैलून से सजाया गया है और नीचे भी बैलून सजाए गया हैं और ऊपर भी लटकाए गए हैं कुछ और कुछ --

नीचे बहोत सारा समान रखा हुआ है लकड़ी का और टेबल रखा हुआ है मेज रखा हुआ है।

और काँच की एक मेज है जिसके ऊपर का कॉपी रखा हुआ है।

एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसके अंदर अ बहुत सारे लोहे के रोड लगे हुए हैं।

छोटी दीवाल चली हुई है चारों तरफ से घेरे गए हैं।

और बोतल रखा हुआ है और बाहर उस ग्राउंड के बाहर एक बहोत बड़ी टंकी लगी है घर है।

ऊपर में झूमर लगा हुआ है और बहुत सारे आदमी जैन और लड़कियाँ भी है।

और एक सामने खिड़की है बहुत लंबी लंबी --

और नीचे फर्श भी दिख रहा है और बाहर--

नीचे बहुत छोटी-छोटी घासे हैं और बहुत बड़ा लाइट लगा हुआ है ऊपर--

ग्राउंड के किनारे-किनारे बैठने वाला बना है उन सीटों पर बहुत लोग बैठे हुए हैं एक साइड है।

और रात का समय है और एक जाली सा गेट का बना हुआ है।

बाजा है अम मोटर्स है और आदमी भी खड़े हैं।

पिज़्जा ये पिज़्जा अ अ होटल है और यहाँ पे बहुत सारे टेबल लगे हुए हैं कुर्सियां लगी हुई है।

बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ दिख रहा है और पहाड़ के पीछे बादल दिख रहे हैं सफेद सफेद--

बहुत बड़ा नदी दिख रहा है और नदी के अंदर भी पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

और ऊपर दो रूम हैं दिख रहे हैं दिन का समय बादल दिख रहा--

रोड दिख रहा है दुकान के सामने एक बाइक खड़ी है।

ए मुझे छोटा सा कमरा दिखाई दे रहा है जिसमें--

पीछे फूलों से सजावट किया गया है और सफेद कलर के की दीवार की तरह बनाई गई है।

और पीछे बादल दिख रहे हैं जो ब्लैक ब्लैक दिख रही हैं और लाइट्स भी दिख रही हैं।

ऊपर भी सामान है नीचे भी बहुत सारे रखे हुए हैं फर्श पे --

और अंदर की तरफ जा रहे हैं और इधर नदी दिख रही है।